सफ़ेद कलर के पेंट है बाउंड्री में --

एक नदी बह रही है जो आधी सुखी हुई है कहीं-कहीं पानी भरा हुआ हैं ।

एक रेंजर खड़ी है जो रेड और ब्लैक कलर की हैं ।

एक छोटा -सा मकान है जिसमें लाल कलर का पेंट दिख रहा है कुर्सी लगी --

और बिल्डिंग दिख रही है सूर्य का प्रकाश दिख रहा है कार खड़ी हैं ।

उ वो साड़ी पहन रखी है पीछे नीली लाइट दिख रही है स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं ।